कचहरी रोड में है अ दुकान का नाम जय माता दी विजय पुस्तक भंडार।

लोग जाने के लिए रास्ता है और यहाँ पे बगल में दुकान भी है की कुछ खाने के लिए भूख लग गया कुछ खाने के लिए यहाँ --

यहाँ पे बहोत बहोत से दूर से आके कॉलेज में एडमिशन कराके और यहाँ पे हॉस्टल के द्वारा अपना शिक्षा पूरा करते हैं बच्चो और अपना सपना पूरा करते हैं आई.ए.एस. --

एक किराना स्टो किराना स्टोर है यहां पे हर प्रकार की खाने की सामग्री उपलब्ध है यहां पे नहाने के लिए साबुन और बाल धोने के लिए शैम्पू भी उपलब्ध है।

फोटो खींच रहे हैं और यहाँ पे काफी भीड़ भी बहोत ज्यादे हैं और सामान अपने खरीद रहे हैं यहां पे।

और ये बच ये स्टूडेंट अपना कॉलेज के लिए जा रहा है और ये गेट पे यहाँ पे ताला लगा हुआ है।

ये सीतामढ़ी का रघुनाथ महाविद्यालय हैं।